मंदिर के सामने गेट पर एक पायदान भी पड़ा हुआ है जो कि चॉकलेटी कलर का है।

पीछे की तरफ एक नोटिस बोर्ड लिखा है जिस पर एक्स_आई_आई कॉमर्स लिखा है मिन्स ट्वेल्थ कॉमर्स लिखा है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वह एक कार है जिसका नाम मारुति सुजुकी सेलेरियो है।

पेट्रोल पंप के सामने कई सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल शाम का समय है।

पेट्रोल पंप के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो ब्लू कलर का है और जिस पर सर्वो लिखा हुआ है।

किले में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सुनसान एरिया में किला दिखाई दे रहा है।

और मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मंदिर के ऊपर एक आसमान गया जिसका कलर सफेद है।

बिल्डिंग का कलर भी वाइट है और बिल्डिंग पे जो मिरर्स लगाए गए है उनका कलर ब्ल्यू है।

शॉप में नीले कलर का शटर लगा हुआ है और शॉप के अंदर एक मैकेनिक भी बैठा हुआ है।

और अलमीरा में बहुत से सामान रखा हुआ है अलमीरा के ऊपर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक विद्यालय है इसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय--

जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो येलो कलर की है और बिल्डिंग के अंदर कई सारे कट्टे रखे हुए हैं। वो ऐसा लग रहा है कि सीमेंट के कट्टे हैं।

और सामने की तरफ एक सैनिटाइजर भी रखा है जिसमें कई सारी लाइटनिंग की गई है।

पीछे की तरफ एक काउंटर रखा है जिसमें कई सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

पीछे के साइड एक डिजिटल स्क्रीन चल रही है जिसमें कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक अलमीरा रखी है जिसमें बहुत सारा छोटा मोटा सामान है और--

इस इमेज में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर टीन शेड की छत पड़ी हुई है।

और कुछ पेंसिल्स भी रखी हुई है जो की वाइट कलर की दिख रही है काफी अच्छा दृश्य है।

इसमें सात लोग खड़े हुए हैं बीच में एक लेडी भी है और साथ मे दो पादरी लग रहे हैं।